ये एक कॉलेज का नजारा है जहा की ऊपर एक मंजिल और दूसरी मंजिल नीचे है।

अगल बगल में बहुत बड़ी दीवारें हैं और ऊपर एक छत में खिड़की नजर आ रही है और सभी कमरों से--

और ऊपर पंखा सफेद कलर का है।

यहां एक झरना है झरने के नीचे--

जहां की गाड़ी आ रही है और एक आदमी भी स्टेशन में--

बोहोत सारे पेड़ वगैरह है और एक स्टेज भी बाहर में है।

ये एक डांस क्लब नजर आ रहा है जो की स्टेज भी बनी हुई है।

बगल में चेयर भी रखा है। एक ऐ_सी भी हैं।

ये एक खेल का मैदान दिख रहा है जहाँ की दो--

लोग खेलने वाले खड़े हैं सामने की ओर तीन बिल्डिंग नजर आ रही है दूर दूर झाड़ पेड़ भी नजर आ रहा है।

लग रहा है कि कुछ लोग अपने सामान लेकर जा रहे हैं कई लोग यहां खड़े हुए हैं।

यहां एक कॉलेज नजर आ रहा है जहां की--

डेकोरेशन भी है और बहोत सारी बत्तियां भी जल रही है।

और लाल कुर्सी भी रखी हुई है लाल टेबल भी है।

और इस फंक्शन में बहोत सारा डेकोरेशन भी किया है बहोत सारे बलून भी टंगे हुए हैं ऊपर--

एक तरफ साउंड बॉक्स भी लगा हुआ है लेफ्ट साइड में--

नीले और वाइट कलर की लाइटे जल रही है।

और उलटे हाथ से सफेद रंग का घर भी न

रंग पुता हुआ है खुला आसमान भी दिख रहा है।

ये एक स्टेज शो हो रहा है यहां की--

पांच छे लड़के लड़कियां डांस कर रहे हैं।

और उनके टेबिल में कुछ सामान भी दिख रहा है।

बाहर से रोशनी आ रही है खिड़की है।

नीचे कार पार्किंग का भी जगह है नीचे एक और खिड़की भी है।

ऊपर खुला आसमान भी है और कुछ तारे भी जा रही है।